दीवार पे दो स्किन टंगा है।

खेते जहां पर की बहुत सारा व्हेजिटेबल लगाया गया हैं और खेतों में लाईट तीनो लगाया हैं।

आंध्रा बैंक की साइड पे घर--

पौधा लगाया गया है और बड़ा बड़ा पेड़ भी है साइट पे--

एक दोकान है जहां पर बहोत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिस्कुट सब को सजाके सेल पे रखा गया है।

नीचे समान नापने की मशीन है और वो वॉटर टैंक है और एक कुलर है कूलर के ऊपर--

एक आदमी जो पूजा कर रहा है वो हाथ पे घड़ी पहना है और सिर पे टोपी पहना है।

जहां पर की लोग रात को कैंपिंग करने आते हैं।

बहोत सारा टायर रखा गया है। डिफरेंट डिफरेंट कलर करके बहोत सुंदर दिख रहा है। घर का कलर --

घर के सामने फूल की माला सजाया--

बाउंड्री के अंदर एक गोदाम है जहां की--

ये एक कंप्यूटर सेंटर है जहां पर कि बहुत सारे स्टूडेंट --

कंप्यूटर सीखने के रूम मे ए_सी है फैन है लाइट भी लगाया गया है।

डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कार सब रखा गया है और कार रखने की फ्लोर भी बहुत क्लीन है।

पड़ता है बहोत सारा लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं।

हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए डेकोरेट करा गया है जहां पर की ब्ला--

अर्लीचो भी लगाया गया है बहुत सुंदर--

चेयर सजाया गया है और बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा गया है साइड पे एक चेयर है।

व्हाइट कलर के येलो कलर के पर्पल कलर के रेड कलर के पिंक कलर की स्काई कलर के --

जिम के सेंटर के कलर भी बहुत अच्छा है और लाइट भी लगाया गया है फैन भी लगाया गया है नीचे का फ्लोर व्हाईट कलर का मार्बल --

ये बहुत सुंदर दिख रहा है और दीवारों पर बहुत सारे--

लकड़ी के टेबुल पड़ा है बैठने के लिए बेंच भी है।